पार्क जा सकते है हरे-भरे व खूब सारे झूले वाले पार्क में जाकर।

आप अपनी स्थानीय जगह को छोड़कर किसी भी शहर को चुन ले।

क्यूंकी हिन्दू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव ही आसानी से अपने भक्तों पर खुश होते है।

स्वाद के मामले में ही नहीं हमलोग सेहत के मामले में भी बहुत ही जरूरी है अमरूद में विटामिन-सी होता है।

ये ताकतवर होता है शरीर को हेलथी बनाए रखने में मदद करता है भुट्टे मे भरपूर मात्रा मे विटामिन --

ये माता दुर्गा जी की झांकी की इमेज हैहिन्दू मान्यता के अनुसार माता दुर्गा को शिव की पत्नी माना जाता है।

जैसे हिन्दुओ के लिए मंदिर होते हैवैसे मुसलमानों के लिए मस्जिदे बनाई जाती --

ये एक हिरण की इमेज हैहिरण एक स्तनधारी जीव होता है ये दुनिया मे लगभग हर जगह पाया जाता जाता है।

हिरण की दौड़ने की रफ्तार बहुत ही तेज होती है और देखने मे बहुत ही सुंदर लगता है।

आधी से ज्यादा सजावट बहुत महंगी पड़ जाती है स्टेज का डेकोरेशन ही बहुत ही स्टाइलिस जाते --

आज व्यक्ति ये चाहता है कि सजावट बहुत-ही अच्छी हो और कम खर्चे में हो।

ये एक ऐसी सड़क की इमेज है जहां से बहुत से वाहन आते जाते है शहरों का परिदृश्य अलग होता है।

यहाँ की सड़के हमेशा बेस्ट रहती है इन पर साइकिल रिक्शा कार स्कूटर मोटर साइकिल तीन पहिया वाहन --

जामताड़ा जिले का इतिहास संथाल पारंगना के इतिहास से भिन्न नहीं है।

ये इमेज एक शादी की फंक्शन की है शादी में कई फंक्शन होते है जैसे की मेहंदी की रस्म संगीत सेरेमनी --

हल्दी सेरेमनी चुड़ा सेरेमनी सेहरा बंधी दूल्हे की एंट्री जूता छुपाई विदाई --

बॉडी हर कोई बनाना चाहता है आजकल के नौजवान लड़के अपने ख़राब दिनचर्या के चलते --

ये एक पोस्ट ऑफिस की इमेज है जहाँ से चिट्ठियां लाई और भेजी जाती है ये एक सार्वजानिक सुविधा है।

इसमें विक्रेता है जो मेल सेवाए प्रदान करता है जिससे पत्र और पार्सल स्वीकार करना डाक घर--

यह एक चट्टान पर बैठे हुए लड़के की इमेज है आजकल लोग चट्टानों पर घूमना फिरना बहुत पसंद कर रहे हैं।

और चट्टानें हमारे धरती से बहोत ही उपरी सतह पर होती है इसलिए वहाँ जाना बहोत ही--

मेले में खिलौने आइस-क्रीम झूले आदि लगे होते है ऐसे मेले कई प्रकार के होते है जैसे धार्मिक मेले अधिकतर धार --

और वहाँ पर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकता है और रुक कर आगे बढ़ सकता हैं।

उसके पास घूमने के लिए जाते है वहाँ नहाते है ऐसे झरने इंसाने द्वारा सिर्फ मनोरंजन के अनुसार बनाया गया है

ये वास्तिविक आनंद मिलता है वह नेचुरल जर्नी में ही मिलता है जिसमे जाने में बहोत ही मजा आता --

पहाड़ ऊपर घूमना लोगों को बहोत ही पसंद है और बहोत ही आकर्षक--

इससे मुर्गी का पालन करके वह पैसे कमा सक--

यह एक बहोत ही सुंदर केक की इमेज है विशेष रूप से शादी वर्ष जन्मदिन की मौके पर केक बनाया जाता है या बाहर से मगाया जाता है केक को आर्डर --

फ्रूट पसंद नही सभी को फ्रूट पसंद है फ्रूट की डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।

करने की कई फायदे होते है जहाँ सिर्फ जिम करने से हमारा शरीर फिट रहता है।

वही योग करने से हमारा दिमाग भी शांत रहता है योग न केवल हमारे शरीर और मांस पेशियों को अच्छा रखता है।

उन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है नंदी को शक्ति सम्पनता और कर्मठा का प्रतीक माना जाता है।

ऐसे में लोग एक दूसरे को रिश्तेदारों को उपहार देते है और उपहार ऐसी चीज होती है जिसे कौन पसंद नहीं करता।